ये काफी सुंदर झांकी बनाई गई है जिसको टेंट में बिठाई गई है।

टेंट के पर्दे भी लगे हुए हैं और उनमें बलून लगे हुए हैं।

और साइड में आप देख सकते हैं एक लैपटॉप रखा है और उसी के सामने एक जेंट्स कंमल उड़ के बैठा हुआ है।

और काफी ग्राहक खरीददारी भी कर रहे हैं।

सीढ़ी जैसी बनाकर उन लोगों ने रखी है और साइड में एक सीढ़ी भी रखी हुई है।

एक लड़का बेड लेके और फोन पर बात कर रहा घूमते घूमते--

आप देख सकते हैं एक छोटी सी दुकान है।

ये एक घर है।

और बाजू में ही एक टेबल रखी हुई है और बाहर बहुत सुंदर गमले रखे हुए हैं और घर का दरवाजा खुला हुआ है।

और उनके ऊपर आप देख सकते हैं कैसी लगा काफी सुंदर लाइटिंग है।

और बहुत सारे अंदर बोर्ड भी लगे हुए हैं।

आप देख सकते हैं काफी सुंदर नीचे रंगोली बनी हुई है फूलों की--

पीछे आप देख सकते हैं काफी बड़ी-बड़ी सुंदर--

आप देख सकते हैं दोनों तरफ काफी सुंदर मकान बने हुए हैं मकान में--

ये एक रास्ता निकला हुआ है आने जाने --

डक बनाई गई है और काफी लोग नजारा देख रहे हैं।

छोटे-छोटे पेड़ लगे हुए हैं बहुत सुंदर--

श्री अष्टविनायक लॉटरी सेंटर का बोर्ड भी लगा हुआ है।

लाइटिंग भी लगी हुई है और सामने एक बोर्ड लगा हुआ है।

शायद मेट्रो ब्रिज बना है और दोनों तरफ से आप देख सकते हैं।

सीढ़ियां आई हुई हैं और ब्रिज के नीचे काफी सारे बाहान आना जाना कर रहे हैं।

और पीछे आप देख सकते है काफी गंदगी हो रखी है कबाड़े जैसी।